भाईयो-बहनों आप जानते ही हैं ये शिव का फल का समझिए जो फल का दुकान है ये फल का दुकान है यहाँ पे दुकानदार नहीं हैं ये फल का दुकान है ।